यहाँ उनकी कोन चला। यहाँ बहोत ही सुंदर स्कूल दिखाई दे। छोटो स्कूल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर गमला भी रखा हुआ है।

और बहुत ही सुन्दर।